पिक्चर में नज़र आ रहा है यहां पर एक --

पिक्चर में हमें दिख रहा है यहां पर--

ये गवर्नमेंट भवन है यहां पर काम--

बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

हैं और इसमें बहोत सारे झूले लगे--